जो की नीले कलर का है सात में ग्रुप ऑफ़ इंस्टीटूशन भी लिखा है।

एक मनुष्य का चेहरा भी दिखाई दे रहा हैऔर एक डेस्कटॉप दिख रहा है।

जो की रेड कलर का है साथ में एक सड़क दिखाई दे रही है और एक --

ये भी नीले कलर का है और उस हाथ गाड़ी में दो पहिए हैं।

यह चित्र में एक एंट्री गेट दिखाई दे रहा है जिसमें वस्तु बिहार लिखा हुआ है।

ऊपर की तरफ समस्तीपुर फेज वन लिखा हुआ है जिसका कलर लाल है।

साथ में एक जाली लगी हुई है जिसके अंदर सब हिरन --

सवारियां भी दिख रही है सवारी ने व्हाइट कलर का शर्ट पहना हुआ है।

एक पेड दिखाई दे रहा है ऊपर के तरफ बादल --

बिल्डिंग दिख रही है बिल्डिंग के सामने लकड़ी के बैरिकेड्स लगे हैं।

और मोमबत्ती जल रही है नीचे पन्नियों पर कुछ गिरा हुआ है।

डंबल्स बड़े ही व्यवस्थित तरीके से रखे दिख रहे हैं।

जिसमें बहोत सारे टाइल्स फ्लोर दिख रहा है फ्लोर का कलर --